लीग के बाहर बड़ा सा लाइट भी लगा हुआ है।

गणेश जी की मूर्ति भी रखी हुई है।

यह एक फास्ट फूड स्टॉल दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा बगीचा है और इसके आस पास बहोत से लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

और इसमें झरने के अंदर बहुत सारे अ प पक्षियां भी दिखाई दे रही हैं और इसके आस पास में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

और इसके अंदर बहोत सी मछलियां भी दिखाई दे रही अभी कुछ लोग झरने के अंदर नहाने आयेंगे।

और इसके आस पास बहोत से घर भी है जिसमें लोग रहते हैं।

बड़ा सा पार्किंग भी दिखाई दे रहा है और इस के आसपास दो तीन डस्टबिन भी पड़े हुए है।

यह एक बारिश के सीजन का इमेज दिखाई दे रहा है और इसमें बहोत सी ऑटो रिक्शा एक्टिवा --

बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नेचर का इमेज है और यहां पे अलग अलग प्रकार के अ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहें और एक इंसान भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह कपड़े की स्टोर दिख रही है उसमें बहोत सारे कपड़े हैं और कपड़ों के रंग भी अलग अलग दिख रहे हैं लाइट्स लगी हुई है।

अलग अलग अह प्ला प्लांट्स लगे हुए हैं।

ये एक ब्रिज है उसके नीचे से बहुत लोग जाते हुए दिख रहे हैं।

और गाड़ी भी दिख रही है छोटे बच्चों के--

ये एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान दिख रही है इसमें बहोत से कस्टमर ज्वेलरी लेने आते हैं।